यहाँ पर हमे बहुत सारे स्विमिंग पूल्स दिखाई दे रहे है यहाँ पर हमे बहुत हम्म बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

कलर है वो पाइप का कलर ब्लू और रेड खंबों का है ब्लू और रेड पाइप का भी है यहाँ पे बहोत बड़ा मैदान है हरा हरा--

यहाँ पर बहुत सारे पौधे लगे हुए है पेड़ लगे हुए है यहाँ पर बहुत सारी नाव है।

और नावकी झुले दिख रहे है हमे यहाँ पर बहुत सारे लोग है यहाँ पर एक कमरा दिख रहा है जो हरे कलर का है लाल कलर का है और बहोत सारा पानी दिख रहा है हमे।

सड़क दिख रही है। कचरा दिख रहा है। मिट्ठी दिख रही है| हमें यहां पर आसमान दिख रहा है।

हमें यहापर बहुत सारे लोग दिख रहे है हमे यहापर कुछ फीशेस दिख रही है।

लाल कलर का पोस्टर दिख रहा है हमे यहाँ पर बहुत सारे दरवाजे दिख रहे है खिड्किया दिख रही है।

हमें यहा पर बहुत सारे लोग दिख रहे है। हमे यहा पर बहुत सारी फिशेस दिख रही है। हमे यहा पर रेड कलर की चादर दिख रही है। हमे यहा पर--

हमें यहां पर एक बहुत सारे लोग देख रहे हैं बच्चा देख रहा है जो की फाउंटेन पर बैठा हुआ है एक पर्दा दिख रहा है।

दरवाजे दिख रहे है। हमे यहा पर खिड़किया भी दिख रही है। पेड़ पौधे दिख रहे है और सफेद आसमान दिख रहा है।

हमे यहाँ पर बच्छे दिख रहे है हमे यहाँ पर बहुत सारे फूल दिख रहे है जो की येल्लो कलर के है हमे यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे है।

इस बच्छे ने शर्ट पहनी है वो व्हाइट कलर का है पॅन्ट ब्लू कलर का है सफ़ेद आसमान दिख रहा है।

हमें यहाँ पर लाइटिंग भी दिख रही है रेड कलर की चेयर दिख रही है।

हमें यहाँ पर बहुत सारी खिड़कियां दिख रही है छत दिख रही है सफेद आसमान दिख रहा है।

हमें यहाँ पर बहुत सारे लोग दिख रहे हैं हमें यहाँ पर एक कांच दिख रहा है लाइटिंग दिख रही है ब्लैक कलर का।

हमे यहा पर कुछ लोग दिख रहा है। हमे यहा पर एक फैन दिख रहा है ब्लेक कलर का हमे यहा पर--

मोबाइल फोन दिख रहा है कांच दिख रहे हैं हमें यहाँ पर रेड कलर का ब्लैक कलर का कारपेट दिख रहा है बहुत सारी मशीन्स दिख रही है।